बीच में हरा भरा ग्राउंड है जहां कुछ गाये चर रहे हैं और एक गाड़ी भी पार्क्ड है।

सामने एक बड़ा मिरर है और उसके नीचे रेड कलर की ड्रॉवर वाली टेबल भी दिख रही है।

ये एक एयरपोर्ट का बैगेज क्लाइंम एरिया लग रहा है बीच में कन्वेयर बेल्ट है जहां पर बैग्स आते हैं और उसके आसपास आर्टिकल ग्रीनरी और एक नकली पेड़ भी लगा हुआ--

कुछ लोग इधर उधर चल रहे हैं और ओवरऑल सीन्स एक शादी मिलाया पब्लिक फंक्शन का लग रहा है।

पीछे की तरफ गाजर ककड़ी और अन्य सब्जियों की बोरियां और थैला दिख रहे हैं।

बीच मे एक छोटा सा पेड़ भी है थोड़े बहुत फ्लावर पॉट आगे रखे गए हैं।

एक कंस्ट्रक्शन में चल रहा कम्युनिटी बिल्डिंग जैसा दिख रहा है या मंदिर भी हो सकता है।

दाएं तरफ एक कुर्सी और एक एक बाल्टी भी दिखाई दे रहा है जो अंदर के सलोंन के हिस्सा लगता है।

काउंटर पर छोटी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स जैसे ट्रिमर आयरन और एक्सेसरीज भी डिस्प्ले में है।

इस तस्वीर में एक ट्रेडिशनल नौका के अंदर का हिस्सा दिख रहा है जो बंबू से बना हुआ है।